कुछ रिबन का कलर पिंक है कुछ रिबन का कलर येलो है।

यहां पे एक ए_सी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक टेंट दिखाई दे रहा है यहां पे एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक नमक का पैकेट दिखाई दे रहा है।

यहां पे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे गिरे हुए पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक कप्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बांस गाड़ा हुआ है।

यहां पे चार चेयर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे टिशू पेपर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक हीटर दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे थैले दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कार दिखाई दे रही है।

यहां पे एक आदमी है यहां पे कुछ औरत दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे डिश एंटीना भी लगा हुआ है।

यहां पे कुछ बैग्स दिखाई दे रहे हैं।